यह व्हाइट कलर का है और ब्राउन कलर का है।

यहां दो औरतें बैठी हुई दिखाई दे रही है |

यहाँ बोहोत से जिम की मशीनें हैं।

यह मस्जिद बहौत ही जादा खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है।

यह एक गैराज है। यहाँ दो कारें खड़ी हुई है।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

एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ।